और आगे में बुक का पुरा एक बंडल रखा हुआ है।

और पीछे में लाइट जो जल रहा है अच्छा से अच्छा लग --

ये कपड़ा का दुकान है और यहां पे स्वेटर टंगा हुआ है।

और ये कोई प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं।

अम्म मोर का जो ऊपर में मोर का पंख का --

जो ऑटो के साथ फोटो घिंचवा रहे है।

यह एक स्टेशनरी का दुकान लग रहा है।

यह कोई मैच चल रहा है।

जिस ई आदमी का टी-शर्ट का कलर --

यहां पे बैलून भी सजाया हुआ है बैलून से भी ।

और ये कोई रेस्टोरेंट लग रहा है सब डेकोरेशन से।